इस चित्र में दो व्यक्ति बैंक के बाहर खड़े नजर आ रहे हैं। बैंक का जो शटर है वो बंद दिखाई दे रहा है। बैंक को जाने का रास्ता सीढियों का है। वो आदमी साईकल के पास खड़े है। बैंक की --

नीचे भी दो गेट है जहाँ पर कुछ लोग देखाई दे रहै है। बैंक में पैसे निकालने के लिए आये होंगे।

प्रस्तुत चित्र में शादी लग रही है दुल्हन एवं दुल्हे के साथ में बहुत सारे लोग फोटो खींचने के लिए मंच पर रहित दिखाई दे रहे हैं।

इस व्यक्ति ने नीले रंग की शर्ट पेनी हुई है एवं इसकी हाथ में एक मोबाईल नज़र आ रहा है कॉपी की यह स्टेसनरी बुक डीपो नज़र आती है एवं सामान दिखाई दे रहा है।

इ चित्र में एक्सिस बैंक का ए.टी.एम दिख रहा है। जिसके बाहर गाड़ियाँ मौजुद है गड़ियों के साथ-साथ कुछ आदमी भी मौजुद है जो बैंक में अपने किसी काम के लिए आए होंगे।

तो कोई आदमी सीढ़ी के ऊपर सी कलर देने के लिए खड़ा है। कोई आदमी प्लास्टर कर रहा है तो एक आदमी कमर पर हाथ रख के खड़ा है। एक आदमी सामान ले जा रहा है। कुल व्यक्ति पचा पांच है।

वहाँ पर तीन दरवाजें दिखाई दे रहै हैं। व्यायाम करने के लिए आया गाया लड़का अपनी बॉडी दिखाकर अपने को खुद को ज्यादा बताना चाहता है।

तो अपने कपड़ो में है और एवं ये मशीनों को सुधार रहा है। इसने नीले रंग की टोपी पेनी हुई है टीशर्ट पेना हुआ है एवं हाफ पेंट पेनी हुई है ऊपर दिखाई दे रहे हैं। यह व्यक्ति काम करता नजर आ रहा है।

अपने डॉक्टर काजांच करने का सामान रखा हुआ है। रक्त दान की यह हॉस्पिटल नज़र आ रही है। महिलाओ ने एवं व्यक्तियों ने मास्क लगाया हुए है | एक व्यक्ति को छोड़ कर सभी ने मास्क लगाए हैं ।

किनारे पर हमें कुछ दर्शक भी नज़र आ रहे हैं जो बाग़ को में लगे झील को देखने आये है । यह अति त सुन्दर दिखाई दे रहा है। बोहोत सुन्दर यह बतख दिखाई दे रही है बतखों की संख्या चार है।

प्रस्तुत चित्रा में रंग मंच पर नाच रहे है। यह बालक बालिकाऐ अपनी सुन्दर प्रस्तुति दिखा रहे है। एक बाल दो बालिकाये है जिन्हने साड़ी पहनी हुई है एवं लड़को ने व्हाइट शर्ट --

ये नाम पुराना हो चुका है। औरंगाबाद इस औरंगाबाद नाम को हटा दिया गया हैं। इसका प्रेजेंट नाम छत्रपति संभा जी नगर हैं यहाँ पर आये हुए छत्रपति संभा जी नगर में बहुत सारे लोग अनुयायी आये हैं दर्शक आये हैं। ये लड़ --

एक आदमी ने अपना मुँह अ अपना अ बालो को ढक लिया है ताकि उसे धुप ना लगे टोपी पहने हुए है और उसके हाथ में मोज़े है। एक दो आदमी नज़र आ रहे है।